इस तस्वीर मे हमे ट्रेन दिखाई दे रहा है यह मालगाड़ी लग रहा है रेल्वे पटरी दिखाई दे रहा है खंबा दिखाई दे रहा है तारे दिखाई दे रहा है उपर मे लोहा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमे एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहाँ बहुत से फूलोंसे सजावट हुआ दिखाई दे रहा है परदा दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है बहुत से लाइट लगे हुए दिखाई दे रहे है कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हमे एक मंदिर दिखाई दे रहा जहा तीन मूर्तिया दिखाई दे रहे एक व्यक्ति मूर्तियों की पूजा करते हुए दिखाई दे रहा.

पीछे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे पत्थर दिखाई दे रहे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

काँच दिखाई दे रहा है कुछ टेबल जैसा दिखाई दे रहा है लाइट्स दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे हमे एक रूम दिखाई दे रहा है। दो खुर्सी दिखाई दे रहे है। तकिया दिखाई दे रहा है। दो पड़दे दिखाई दे रहे है। ए_सी दिखाई दे रहा है। दरवाजा दिखाई दे रहा है। टाइल्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है।